बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह झरना बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

शादी के एवेन्यू का दिखाई दे रहा है।

यहां पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं।

यहां पर ए_सी भी लगी हुईं हैं।

यह फोटो एक स्टूडियो का है।

इसकी ईस्थापना सन उन्नीस थर्टी थ्री में--

यह होटल हाइवे पर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहा एक प्रकृति का फोटो है।

यहां पर बहोत सुंदर झरना हैं।

यहां फोटो एक बगीचे का है।